उ नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है।

चीज़ बनाया जाता है आधार कार्ड पेन कार्ड --

यहाँ शादी में बहुत सारा रहा था ।